सफेद रंग का दिखाई दे रहा है।

दो पेज दिख रहे है जिनका रंग पीला और काले रंग का दिख रहा है।

सामने एक मकान दिख रहा है जिसका रंग--

है और कुछ बादल है जो कि काले रंग के दिख रहे हैं।

सामने एक जमीन दिख रहा है जिसका रंग भूरे रंग का है और कु--

नो सॉरी आसमानी रंग का दिख रहा है और कु--

और एक गाड़ी खड़ी हुई है जिसका रंग काले रंग का दिख रहा है।

और एक महिला है जिन्होंने--

दिख रहा है।

जिसका रंग सफेद रंग का है।

आसमानी रंग का है और कुछ पेड़-पौधे है जिनका रंग हरे रंग का है।

सामने एक टेबल है जिसका रंग सफेद रंग का है उसमें एक--

सफेद आदि रंग के है और एक--

और एक आदमी है जिनमें नीले और सफेद रंग के कपड़े--

सफ़ेद और हल्का हरा रंग का दिख रहा है।